यह एक बिल-बिल्डिंग है जो वाइट कलर का है और यहा पर डस्टबिन रे ब्लू कलर का है और एक बाइक खडा हुआ है फ्लोर इसका ब्लैक कलर का है।

यहाँ एक दूकान है जिसमे बोहोत सारी किताबे रखी हुई है और यहाँ --

कीसी कंपनी का ये फोटो है जिसमे की--

पेंट पेनी हुई है जिसका रंग ब्लू है और इसमें शर्ट --

पानी पि रहा है एक नीले रंग के बोतल से यहा पर बोहोत --

यह एक पार्क का व्यू है जिसमे की बोहोत सा--

यह एक यभानिका नाम का एक स्थल है जिसमे की बहोत सारे लेडीज खरी हुई है बहोत सारे बच्चे खड़े हुए है और ये दो तीन आदमी खड़े हुए है और लेडीज का कलर --

वाइट रेड है और इसमें दो लोग है जो की बैठे हुए खरे हुए है जिनके शर्ट का कलर बुलु और रेड है।

यह एक होटल का रूम है जिसमें कि अ खूबसूरत सा बेड लगा हुआ है और एक सोफा है जिसमें--

जिसके पास एक लैम्प है और यहाँ पर बहुत सारे तकिये रखे हुए हैं और एक टेबल है।

और एक करटेन लगा हुआ है जो भूरा कलर का है और ये बेडशीट बहत मोलायम है और गदगद है।